रूम के बाहर देखने पर लगता है ये तस्वीर दिन के समय का है।

पृष्ठ भूमि में एक इमारत दिखाई दे रही है।

पीछे की दीवार पर टर्निंग ड्राई क्लीनर्स लिखा हुआ है जो व्यवसाय का नाम और उसकी सेवाओं का संकेत देता है।

दुकान के बाहर सरक पर कुछ लोग चल रहे हैं।

यह स्कूल का रंग हल्का गुलाबी है और सट नीली है।

सीलिंग पर कुछ फैन लटक रहे है।

तस्वीर में निर्माणस्थल कुछ इमारतें और दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

ये तस्वीर शायद शाम के समय का हो सकता है।

यह तस्वीर दिन के समय का है।

ये तस्वीर एक शॉपिंग मॉल की है।

इस जिम में कई तरह की एक्सरसाइज करने की मशीनें और उपकरण मौजूद है।

तस्वीर असम के किसी इलाकों में स्थित एक पेट्रोल पंप की है।

पेट्रोल पंप में कुछ लोग भी दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर एक बरे से सड़क की है।

आसपास के क्षेत्र में हरे भरे पेर और पौधे हैं।

इसमें सफेद सोफे और कुर्सियां है और फर्श पर लाल और सुनहरे रंग की डिजाइन है।

यहां टेबल पर एक हेलमेट भी रखा हुआ है।

के ऊपर एक धातु की सैट है।

तस्वीर दिन के समय की है।

आर्च के दोनों तरफ एक दीवार है जो मैदान को घेरती है।

स्टेशन का नाम इमारत के सामने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है।

यह एक दो मंजिला इमारत है जिसमे नारंगी और सफेद रंग का बाहरी भाग है।

इसमें ब्याम करने के लिए कई उपकरण जैसे ट्रेडमिल क्रॉस ट्रेनर और अन्य मशीनें दिखाई दे रही है।

तस्वीर एक बड़े से कमरे का है।

शॉपिंग मॉल के ऊपर करियर पर नामक एक कोचिंग सेंटर का बड़ा सा साइन बोर्ड दिखाई दे रहा है।